बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी औरते दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में एक दुकान दिखाई दे रही हैं।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

कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में लाइटें दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में पंखे दिखाई दे रहें--

मुझे इस फोटो में किताबें दिख रही--

मुझे इस फोटो में एक बस दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में ट्रेन दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारी सब्जियां दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो में बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

मुझे इस फोटो में केक दिखाई दे रहा है।

कारे दिखाई दे रहे है।

मुझे इस फोटो में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में गाड़ियां दिख रही है मुझे--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

मुझे इस फोटो में चट्टाने दिखाई दे रही है।

मुझे इस फोटो मे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।